बाहर एक चार पहिये का वाहन खड़ा है उसमें कुछ लाइट हैं जिनका कलर लाल है।

खिड़कियों में लोहे के रॉड लगे हैं और दूर तक बड़े माकन और वृक्ष हैं।

नीचे दो शटर है शटर के ऊपर भी सफेद कलर का लिखा हुआ है। पास में एक गेट है और एक जीना है उसके उपर कुछ लाइटें --

गुलाबी काला पीला और नीला कलर का है और बोहोत सारी लाइट हैं जो सफ़ेद कलर की लगी हैं।

खिड़की में कुछ बारीक़ सी डिज़ाइने हैं जिनका कलर पीला है। उससे ऊपर एक छातानुमा डिज़ाइन बनी हुई है।

आ कुछ आदमी हाथ में झाड़ू लगा रहे हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है कुछ मशीन लगी हुई है और लोहे की ग्रिल है और एक डस्टबिन रखा हुआ है। नीले कलर की पॉलिथीन नीचे पड़ी है।